इस चित्र में हमे दिखाई दे रहा है की यहाँ पे कुछ पत्ते लगे--

और उसके हाथ में एक कटोरा भी है।

इस चित्र में हमे दिखाई दे रहा है की यहाँ दो तिन दुकाने है।

और सामने हमे मिस्टर कंप्यूटर की दूकान दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमे एक जर्ना दिखाई दे रहा है जो पथरो से निचे आ रहा है।

एक ऑटो भी हमे आता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमे एक बैंक दिखाई दे रहा है उस बैंक में हमे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे--

और एक खोल्डिंग भी लगा है एक घड़ी भी यहाँ हमे लगी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमे एक दूकान दिखाई दे रही है।

इसमें कुछ पेड़ हमे लगे दिखाई दे रहे है।

एक मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है उस मूर्ति के वो जो मूर्ति है वो मटके की बनी हुई है।

और एक आदमी जो है जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे कुछ चेरे भी रखी हुई है एक एरोप्लेन की यहाँ पे--

अ जो है मूर्ति भी बानी हुयी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमे एक आईसक्रीम की दुकान दिखाई दे रही है जहा पे बोहोत सारे आईसक्रीम रखे दिखाए दे रहे है।

और यहाँ पे कुछ डब्बो में कुछ चॉकलेट्स भी रखी हुयी है।

यहाँ पे जो है बोहोत सारी सिडिया और सिलींग भी लगी हुयी है।

एक मशीन भी रखी हुई है पीछे हमें कुछ बाइके दिख रही है और--

और हमे कुछ शटर भी दिखाई दे रहे है और चेयर रखे दिखाई दे रही है।

खड़े दिखाई दे रहे है कुछ मिट्टी पे चल रहे है कुछ झरने के पास मस्ती कर रहे --

बोहोत सारे लगे दिखाई दे रहे है जो हरे रंग के --

कहिसे जा रहा है और ऊपर कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

यहाँ पे जो पत्थर है ओ टूटे हुए है और पानी जो है इनके बिच से निकल के जा रहा है।

इस चित्र में हमे एक स्टेशन दिखाई दे रहा है जिसकी हमे पटरिया दिखाई दे रही है।

यहाँ पे कुछ लायटे भी हमे लगी दिखाई दे रही--

इस चित्र में हमे एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे बोहोत सारे बच्चे बैठे हुए है।

और सारे ही बच्चे कुछ लड़का कुछ लडकिया यहाँ दिख रहे --

पीछे हमे कुछ मैट्स रखे दिखाई दे रहे है जो योगा मैट्स है।

इस चित्र में हमे एक मैदान दिखाई दे रहा है।

एक ट्रक सीधा और कुछ ट्रक जो है ओ तेडे में खड़े हुए है।

एक आदमी भी हमे दो आदमी यहाँ खड़े दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में हमे एक स्लाइड दिखाई दे रही है ये वाटर पार्क लग रहा है।

इस चित्र में हमे एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ घर बने हुए है।

इस चित्र में हमे एक मैदान दिखाई दे रहा है जहा पे पुरे में मिट्टी ही मिट्टी है।

और पीछे में कुछ अ एक पक्का सा रोड बना हुआ है।

पीछे हमे एक ट्रक खड़ा दिख रहा है और उस ट्रक के सामने कुछ आदमी खड़े दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में हमे दिखाई दे रहा है की ये एक चर्च है।

यहाँ पे हमे एक पेड़ भी छोटेसे लगा दिखाई दे रहा है जो लटका हुआ है।

इस चित्र में हमे एक जगह दिखाई दे रही है जिसमे पानी लगा हुआ पानी हमे दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे पुरे में मिट्टी ही मिट्टी है और मिट्टी के सामने हमे पानी--

पीछे हमे पांडा लटके हुए दिखाई दे रहे है बड़े से छोटे से --

और हमे यहाँ से एक अ सिडिया तीन चार दिखाई दे रहे है।

और उसके ऊपर बोहोत सारे ए_ सी के डब्बे हमे दिखाई दे रहे है।

उसके सामने हमे एक कार भी खड़ी दिखाई दे रही है और कुछ पेड़ यहाँ लगे हुए है।

सामने बना हुआ है और उस होटल के ऊपर एक घर बना हुआ--

और यहाँ पे हमे रोड दिखाई दे रहा है जो तीन लेन रोड है।

यहाँ हमे दो गाड़िया खड़ी दिखाई दे रहा है ऊपर हमे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे है।

हमे यहाँ कार भी यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही है ।

इस चित्र में हमे एक मैदान दिखाई दे रहा --

इसमें बिच में तो को बिलकुल मिट्टी है और कोई मतलब यहाँ पे चोको से लायने बानी हुयी है।

साईड में हमे अ घास दिखाई दे रहे है जो कटी हुयी घास है और बिलकुल लाइट ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमे एक जगह दिखाई दे रही है जिसमे कुछ चेयर रखी दिखाई दे रही है और दिवार पे --

सामने हमे कुछ घास दिखयी दे रही है जिसमे पाइप --

इस चित्र में हमे एक मॉल दिखाई दे रहा है जहा पे बोहोत सारे खाने की दुकाने --

मतलब पानी गिरा होगा और सामने जो है यहाँ पे बाइक खड़ी--

एक अंकल हैं जो हेलमेट पहने हुए हैं एक आंटी हैं जो रेनकोट पहनी हुई।

और उसके बाहर कुछ पैंटिंगे बानी हुयी है और बच्चो की जो है ड्राइंग बानी हुयी --।

उनमे हमे एक गोल्डन कलर का गेट दिखाई दे रहा है और एक आम का पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमे एक जगह दिखाई दे रही है जहा पे बहुतसारे जो है--

ओरिओ के बिस्किट और टूटे हुए क्रशड ओरिओ के और किटकैट और चॉकलेट कैडबरी --

इसमें सामने दो आदमी खड़े हुए हैं और कुछ यहां पे पेड़ लगे हुए हैं।

ओ मिट्टी की है और पेड़ ही पेड़ यहाँ हमे लगे दिखाई--

दे रहे है ऊपर हमे खुला आसमान भी दिखयी दे--

आ रहे है और कार जो है ओ ऊपर लटक हुयी है और उसका जो सामने का है ओ खुला --

नहीं कर रहे है एक आदमी उसके ऊपर हात लगाया हुआ है और एक उसको --

इस चित्र में हमे एक बिल्डिंग लगी दिखाई दे रही है जो सामने बानी हुयी है सफ़ेद और ग्रे कलर --

पेड़ लगे हुए है और यहाँ पे पुरे में हमे एक रोड सीधा सीधा जाता जाता दिखाई दे रहा है जहा से कुछ ट्रक आ--

यहाँ पे जो घास है यहाँ पुरे में घास लगे हुए है और उनपर हमे आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे पि_ डब्लू_ डी भी लिखा हुआ है जहा पे होर्डिंग लगा हुआ है और कुछ गेट हमे लगे दिखाई दे रहे है।

ब्राउन और कुछ अंदर जा करके ब्लैक कलर के है और एक मूर्ति यहाँ पर लगी हुयी है ।

इस चित्र में हमे दिखाई दे रहा है की एक खुला अ खुली जो है मैदान है उसमे घास लगी हुयी है कुछ पेड़ लगे हुए है।

और सामने हमे लायटे लगाए हुए है और डेकोरेशन लगा दिखाई दे रहा है एक स्टेज बना हुआ उसपे डेकोरेशन किया हुआ है।

और ऊपर दो पेड़ लगे हुए है और निचे डस्टबिन --